हरे - हरे परदे जो कि खिडकियों पर लगे है| पीले रंग की शॉल ओढे एक आदमी है बैठा हुआ है।

बिल्डिंग में की गयी है ऊपर बिल्डिंग के बड़ा सा बोर्ड है नीचे कुछ आदमी टहल रहे हैं।

एक घर है घर के ऊपर बड़ा सा प्रथमा बैंक का बोर्ड लगा है | बगल में सीढियां है नीचे एटीएम मशीन पंजाब नेशनल बैंक है ।

दो आदमी सफ़ेद कुर्ता व पैजामा पहने छत पे खड़े हैं ।